ये पिक्चर ब्यूटी पार्लर की है। इसमें दो चीयर्स और एक सोफा और दो शीशे है।

जिसमें उसके आगे दो हेयर ड्रायर्स और ब्यूटी पार्लर का सामान पड़ा है।

और टी-शर्टस के ऊपर कितने सारे बॉक्स है जो की पीले और--

और एक प्लेटफार्म भी है और बैकग्राउंड काले रंग की है।

और हस्पताल के आस पास बहुत सारे पेड़ है और एंबुलेंस के साथ वाली दीवार का कलर रेड है।

और साथ में फुटपाथ भी है स्कूल के अंदर एक कॉरिडोर दिख रहा है और कितनी सारी खिड़कियां दिख रही है।

टाइल लगाने की कोशिश कर रहा है इस चित्र में उसके हाथ में एक मशीन और साथ में कई अनाब शनाब--